घासें हईं खम्बा हईं हरियारी हईं पेडें हईं।

मम्म घरे हईं स्कूल हईं मम्म सड़क हईं मट्टी हईं आसमान हईं।

लाईटें हईं तारें हईं बादल हईं।

ये आदमी हयें ये रिक्शा हयें सड़क हयें मंदिल हयें ।

मछली हयें होटल हयें ।